देख सकते है की हमे एक शो शॉप देखने को मिल रही है जो की बहुत ही प्यारी सी है किसी आईसक्रीम शॉप लग रही है पार्लर सा और वाह पे बार कि तरफ हम देख पा रहे है की काफी सारे आईसक्रीम के पोस्टरस् लगे हुए है।